काफी कम प्राइसेस में यहां पर मिलती हैं।

काफी अलग अलग चीजें मिलती हैं जैसे कि उनका हेयरकट हो गया उनके लिए कपड़े हो गये।